शर्ट और जींस है ट्विल्स लिखा हुआ है।

बहुत सारे लोग अपने गाड़ियों में हैं।

एक आदमी एक बाइक पे बैठा हुआ हैं। एक रिक्षा चला रहा हैं।

साइड में पाइप गई हुई है ऑरेंज कलर का है।

टॉप है पीछे दो चार आदमी खड़े हैं।

नीट को टाइल्स लगा हुआ है जहां पे--

एक कॉलेज में कोई कंसर्ट चल रहा है जहां पे डांस कंपटीशन चल रहा है।

एक लड़की खड़ी है जो की रेड कलर की स्कर्ट पहनी है ब्लैक कलर का जींस पहना है और ब्लैक कलर का टॉप पहना है।

वह पानी दे रही है एक पाइप है जो कि ग्रीन कलर का है।

पीछे बहोत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है।

बाहर एक लाइट लगा है ऊपर सीलिंग है साइड में नीला कलर लगाया गया है।

मुर्गियों के अंडे हैं बहोत सारी मुर्गियां हैं पोलेट्री फार्म है।

शेल्फ बनाया गया है उनको रखने के लिए।

बहोत सारे पेड़ लगे हैं एक स्कूटी है दुल्हन का कुछ तस्वीरें हैं बहोत सारे हेयर --

एक लड़का ब्लैक कलर का ड्रेस पहेना हुआ है और एक जिम का ड्रेस पहना हुआ है।

कोल्ड की चीजें रखी हुई है।

एक बहोत बड़ा गार्डन है वहां पे कुछ बच्चों के कपड़े सूख रहे हैं।

अंदर जाने के लिए रास्ता हैं।